यह एक नया ऑटो है जो कि अभी नया ही है जिसके ऊपर अभी तक प्लास्टिक भी नहीं निकली है यह ऑटो काले कलर की है इसका छक्का भी काले कलर का है अंदर पीले कलर का है और उसके अंदर लाल कलर का है।

मेन स्विच दिख रहा है एक पिलर भी दिख रहा है नीचे टाइल्स भी सफ़ेद कलर की ल--

अंदर एक गाडी खड़ी हुई दिख रही है एक आ आदमी बाहर खड़ा होकर के फ़ोन पे बात कर रहा है एक खिड़की दिख रही है बैंक के बाजू में एक और गेट लगा हुआ है जो बंद है बाहर दो गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है और एक चा साइकिल दिख रही हैं।